यहां पर दो बेड रखा है।

अ बाई तरफ एक सेल्फ हैं.

यहां पर एक रास्ता है।

और सामने दो बाइक है।

यह मैकेनिक्स का दुकान है।

यहां पर दो लोग काम कर रहे हैं।

और एक लोग है जो बाल्टी के भीतर हाथ रखा है।

तालाब के आगे छोटे छोटे पेड़ है।

इसके चार पांच दरवाजा है।

यहां बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

जहां पर दो टीम खेलने के लिए मैदान पर खड़ा हुआ है.

ये अंदर एक शेर है।

पहले शेल्फ पर हाथ का बना हुआ तीन चार चित्र है।

हम चित्र पे एक नदी देख पा रहे हैं.

ये एक एक घर की झोगी है।

बाएं तरफ कुछ पेड़ है.

ये गाड़ी के रंग लाल है।

यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है।

गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हैं और बीच में एक रास्ता है.

यह उज्जैन पैलेस का फोटो है.

उसके हाथ में एक बैग है वो आदमी सैनिटाइजिंग कर रहा है।

यहां पर हम प्रभु प्रभु है लिख लिखा देख पा रहे हैं।

चित्र अभी हमारे सामने है वो एक नदी के किनारे की चित्र है औ --